और बहुत सारे सामान रखे हैं प्रोडक्ट रखा हुआ है शैम्पू रखे हैं साबुन रखे हुए हैं।

पैरधन रखे हुए गड्डी बने हुए कुछ ब्लू कलर के कुछ पर्पल कुछ रेड कलर के ।